ये एक जिम का चित्र है जिसमें अह बहुत सारी जिम की मशीनें रखी हुई हैं जिसमें दो आदमी--

इस चित्र में काफ़ी सारे लोग कहीं इकट्ठा हुए है इसमें पुरुष भी है बहोत सी महिलाएं भी है और बुजुर्ग भी--

काफी सारी बाईकें खड़ी हुई हैं और एक बाइक एक व्यक्ति चला रहा है जो पार्किंग में लगाने वाला है और उस बाइक पे एक व्यक्ति बैठा हुआ --

और नीचे गाड़ियो की साइड से अ काफी लोग चल कर जा रहे है पैदल जिसमे से दो व्यक्ति जो सबसे पीछे है उसमे से एक ने ब्लैक कलर का बेग टांग रखा है।

उसके पास ही टेबल रखी है उसे पे ग्लू रखा हुआ है अ साइड में थ्री चेयर वाली एक चेयर रखी हुई है।

ये चित्र देखने में एक नर्सरी का चित्र लग रहा है जहा पर काफी वेराइटी के पोधे लगे हुए है।

और बहुत अच्छे लग रहे हैं और सामने एक शेड डला है उसके बाहर भी काफी बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं और शेड के अंदर पौधे रखे हुए हैं।

आपको देख रहा है सामने हेना कुछ अ वाल जेसा नही ही लेकिन कुछ बना हुआ है ।

और कार वाइट कलर की ही और ये सब कबाड़ का आइटम हे--

ये पार्क का दृश्य हे पार्क के अ गेट में हेना बम्बू स्टिक गेट बना हुआ हैं और उसके ऊपर बेले चड़ई हुई हैं।